xcos में calling userdefined functions पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न करना सीखेंगे:
* scilab में स्क्वैरिंग फंक्शन लिखना
* xcos में scifunc ब्लॉक उपयोग करना
* विविध प्लॉट्स बनाने के लिए mux ब्लॉक उपयोग करना
* विविध इनपुट्स और आउटपुट्स रखने वाले फंक्शन्स को कॉल करना
उबन्टु 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो संस्थापित scilab वर्जन 533 के साथ उपयोग किया जाता है
आपको scilab और xcos की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया spoken hyphen tutorial dot org पर जाएँ
अपने कंप्यूटर पर scilab शुरू करें
scilab कंसोल में टाइप करें editor और एंटर दबाएं
फिर निम्न कोड टाइप करें:
function स्पेस y इज़ इक्वल टू squareit ब्रैकेट खोलें a ब्रैकेट बंद करें
एंटर की दबाएं और टाइप करें:
y इज़ इक्वल टू a की घात 2
अंत में एक सेमीकोलन लगाएं
फंक्शन एक इनपुट वेरिएबल a और एक आउटपुट वेरिएबल y रखता है
फंक्शन का नाम squareit है
यह फंक्शन वेरिएबल a को स्क्वायर करने का काम करेगा
यह परिणाम को y में संचित करेगा
अब इस फाइल को वांछित डायरेक्टरी में सेव करते हैं
मैं इस फाइल को squareit के नाम से और sci एक्सटेंशन के साथ सेव करुँगी
यहाँ हम फंक्शन्स को sci फॉर्मेट में सेव करने का अनुसरण करते आ रहे हैं
scilab कंसोल खोलें
अब टाइप करें xcos और एंटर दबाएं
दो विंडोज़ palette browser और untitled xcos विंडो खुलेंगी
अब हम xcos डायग्राम बनाएंगे
यह squareit फंक्शन को एक्सेस करेगा जो अभी बना है
यह scifunc ब्लॉक प्रयोग करके किया जा सकता है
palette browser विंडो पर जाएँ
पैलेट ब्राउज़र में userdefined फंक्शन पर क्लिक करें
इस सेशन में scifunc_block_m ब्लॉक को ढूँढें
इसे untitled xcos विंडो में खींचें और छोड़ें
बेहतर दृश्य के लिए मैं untitled xcos विंडो को ज़ूम करुँगी
जैसा आप देखते हैं मैं ज़ूम बटन प्रयोग करुँगी
अब इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए scifunc ब्लॉक पर डबल क्लिक करें
scilab multiple values request नामक एक विंडो खुलेगी
यह विंडो आपको scifunc ब्लॉक के इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स की संख्या को बदलने की अनुमति देगी
हमारे फंक्शन squareit के पास केवल एक इनपुट और आउटपुट वेरिएबल है
अतः हम सेटिंग्स को ऐसे ही रहने देंगे
ok पर click करें
एक नयी scilab input value request विंडो खुलेगी
टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के साथ फंक्शन का नाम टाइप करते हैं
यह फंक्शन scifunc ब्लॉक द्वारा कॉल किया जायेगा
उपलब्ध टेक्स्ट बॉक्स में
डिफ़ॉल्ट फंक्शन के नाम को एडिट करें
टाइप करें: y1 इक्वल्स टू squareit ब्रैकेट खोलें u1 ब्रैकेट बंद करें
ध्यान दें कि यहाँ इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स क्रमशः u1 और y1 हैं
ये वास्तविक फ़ंक्शन में उपयोग हुए वेरिएबल्स नामों की तरह नहीं बल्कि सिर्फ u और y की फॉर्म में होने चाहिए
ok पर click करें
एक अन्य scilab input value request विंडो खुलेगी
आगामी तीनों विंडो जो खुलेंगी उनमें ok पर क्लिक करते रहें
scifunc ब्लॉक अब कॉन्फ़िगर किया जाता है
आगे हम sinusoid जेनरेटर ब्लॉक को समिल्लित करेंगे
palette browser विंडो में sources सेक्शन पर क्लिक करें
untitled xcos विंडो में sinusoid जेनरेटर ब्लॉक को खींचें और छोड़ें
सहूलियत के लिए उस ब्लॉक को scifunc ब्लॉक के बायीं तरफ रखें
अब हमें आउटपुट वेरिएबल प्लॉट करने के लिए एक ब्लॉक की ज़रुरत है
palette browser विंडो में sinks सेक्शन पर क्लिक करें
untitled xcos विंडो में cscope ब्लॉक को खींचें और छोड़ें
ब्लॉक को scifunc ब्लॉक के दायीं तरफ रखें
सहूलियत के लिए इसे scifunc ब्लॉक से दूर रखें
ध्यान दें कि cscope ब्लॉक एक लाल इनपुट पोर्ट रखता है
यह एक इवेंट इनपुट है
हमें एक इवेंट जेनरेटर ब्लॉक की ज़रुरत है
palette ब्राउज़र विंडो में sources सेक्शन पर क्लिक करें
clock अंडरस्कोर c ब्लॉक को untitled xcos विंडो में खींचें और छोड़ें
इसे cscope ब्लॉक के ऊपर स्थित करें
ध्यान दें कि cscope ब्लॉक केवल एक इनपुट पोर्ट रखता है
लेकिन हम इनपुट और आउटपुट दोनों वेरिएबल्स को एक ही प्लॉट विंडो में प्लॉट करना चाहते हैं
अतः हमें एक multiplexer ब्लॉक की ज़रुरत है
यह ब्लॉक दो इनपुट्स लेगा और एक आउटपुट पोर्ट पर आउटपुट देगा
palette ब्राउज़र विंडो में signal routing सेक्शन पर क्लिक करें
mux ब्लॉक को untitled xcos विंडो में खींचें और छोड़ें
ब्लॉक को scifunc ब्लॉक और cscope ब्लॉक के बीच में रखें
अब मैं mux ब्लॉक को रीसाइज़ और दोबारा अलाइन करती हूँ
अब हम ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ते हैं
sinusoid generator ब्लॉक के आउटपुट पोर्ट को scifunc ब्लॉक के इनपुट पोर्ट से जोड़ते हैं
अब scifunc ब्लॉक के आउटपुट पोर्ट को mux के लोअर इनपुट से जोड़ते हैं
mux ब्लॉक के आउटपुट पोर्ट को cscope ब्लॉक के इनपुट पोर्ट से जोड़ते हैं
clock अंडरस्कोर c ब्लॉक के आउटपुट पोर्ट को cscope ब्लॉक के इवेंट इनपुट पोर्ट से जोड़ते हैं
हमें sine इनपुट को भी प्लॉट करना है
हमें sinusoid जेनरेटर ब्लॉक को mux से जोड़ना है
mux ब्लॉक के ऊपरी इनपुट पोर्ट पर क्लिक करें
फिर बिना छोड़े हुए अपने माउस पॉइंटर को sinusoid generator ब्लॉक और scifunc ब्लॉक के बीच वाले लिंक की तरफ ले जाएँ
लिंक को मोड़ने के लिए माउस बटन को छोड़ दें या अलगअलग स्थानों पर क्लिक करें
जैसे ही आप लिंक पर पॉइंटर लाते हैं लिंक हरा हो जाता है
इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लिंक बनाने के लिए माउस बटन को छोड़ दें या एक बार क्लिक करें
अब हम अन्य ब्लॉक्स के विन्यास को देखते हैं
हम sinusoid generator ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी आवृति मैग्नीट्यूड परिमाण और फेज़ अवस्था बदल सकते हैं
यह करने के लिए sinusoid generator ब्लॉक पर डबल क्लिक करें
कॉन्फ़िग्रेशन विंडो खुलेगी
हम magnitude और frequency को 1 और phase को 0 रखेंगे
कॉन्फ़िग्रेशन विंडो को बंद करने के लिए ok पर क्लिक करें
अब cscope ब्लॉक को कॉन्फ़िगर करते हैं
इसकी कॉन्फ़िगरेशन विंडो को खोलने के लिए cscope ब्लॉक पर डबल क्लिक करें
ymin पैरामीटर को माइनस 2 और ymax पैरामीटर को 2 करें
refresh period वैल्यू को 10 करें
इस वैल्यू को ध्यान रखें
buffer size वैल्यू को 2 करें
ok पर click करें
अब clock_c ब्लॉक को कॉन्फ़िगर करते हैं
इसकी कॉन्फ़िगरेशन विंडो को खोलने के लिए ब्लॉक पर डबल क्लिक करें
period की वैल्यू को 01 रहने दें
initialisation time को 0 करें
ok पर click करें
अब simulation पैरामीटर्स को बदलते हैं
untitled xcos विंडो की मेन्यू बार पर simulation टैब पर क्लिक करें
अब ड्राप डाउन मेन्यू से setup पर क्लिक करें
cscope ब्लॉक के refresh period से मिलान करने के लिए final integration time को बदलें
refresh period की वैल्यू 10 थी
अतः final integration time की वैल्यू को 10 करें
ok पर click करें
अब file पर क्लिक करें और फिर xcos डायग्राम को सेव करने के लिए save पर क्लिक करें
xcos डायग्राम को सेव करने के लिए एक वांछित डिरेक्टरी चुनें
यद्यपि यह सलाह दी जाती है कि इसे आप उसी फोल्डर में सेव करें जहाँ आपने squareitsci फाइल सेव की है
ok पर click करें
ध्यान दें कि scifunc ब्लॉक squareit फंक्शन को कॉल करेगा
इसका मतलब है कि xcos डायग्राम को निष्पादित करने से पहले हमें squareit फंक्शन को लोड करना चाहिए
scilab एडिटर विंडो पर जाएँ जहाँ squareitsci फाइल खुली हुई है
एडिटर के मेन्यू बार पर उपलब्ध execute बटन पर क्लिक करें
यह squareit फंक्शन को लोड करेगा
अब हम xcos डायग्राम को निष्पादित कर सकते हैं
xcos डायग्राम फाइल को खोलें
xcos विंडो के मेन्यू बार पर उपलब्ध start बटन पर क्लिक करें
एक ग्राफ़िक विंडो खुलेगी
यह विंडो दो प्लॉट्स रखेगी
काले रंग में इनपुट sine wave और हरे रंग में आउटपुट sine wave
ध्यान दें कि squareit फंक्शन में कार्यान्वित हुए स्क्वैरिंग फंक्शन ने निश्चित ही साइन वेव का स्क्वायर किया है
अतः आउटपुट साइन वेव पॉज़िटिव एक्सिस पर स्थानांतरित की गई है
plot विंडो को बंद करें
अब देखते हैं कि एक फंक्शन जो एक से ज़्यादा इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स रखता है उसे कॉल करने के लिए scifunc ब्लॉक को कैसे एडिट करते हैं
scilab एडिटर विंडो पर जाते हैं
दो इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स रखने के लिए squareit फंक्शन को एडिट रखें
आउटपुट वेरिएबल को निम्न की तरह एडिट करें स्क्वायर ब्रैकेट खोलें y कॉमा z स्क्वायर ब्रैकेट बंद करें
इनपुट वेरिएबल्स को निम्न की तरह एडिट करें ब्रैकेट खोलें a कॉमा b ब्रैकेट बंद करें
हम स्क्वायर किए हुए आउटपुट को 1 यूनिट स्थानांतरित करके फंक्शन को बदलेंगे
मेन फंक्शन लाइन को निम्न की तरह एडिट करें:
y इज़ इक्वल टू b प्लस a की घात 2 अंत में एक सेमीकोलन लगाएं
एक आउटपुट भी बनाएं जिसका एम्प्लिट्यूड आयाम इनपुट का आधा होगा
एंटर की दबाकर अगली लाइन पर जाएँ और टाइप करें:
z इज़ इक्वल टू 05 मल्टिप्लाइड बाइ a अंत में एक सेमीकोलन लगाएं
अब file को सेव करें
xcos विंडो खोलें
इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए scifunc ब्लॉक पर डबल क्लिक करें
input port size फील्ड में 1 कॉमा 1 के बाद एक सेमीकोलन लगाएं और दोबारा 1 कॉमा 1 टाइप करें
उसी प्रकार output port size फील्ड में 1 कॉमा 1 के बाद एक सेमीकोलन लगाएं और दोबारा 1 कॉमा 1 टाइप करें
ok पर click करें
एक नयी scilab input value request विंडो खुलेगी
टेक्स्ट बॉक्स में
y1 के बाद एक कॉमा लगाएं और टाइप करें y2
y1 और y2 को स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखें
अब u1 के बाद एक कॉमा लगाएं और टाइप करें u2
okपर क्लिक करें
एक अन्य scilab input value request विंडो खुलेगी
आगामी दिखने वाली तीनों विंडोज़ में ok पर क्लिक करते रहें
अब scifunc ब्लॉक कॉन्फ़िगर होता है
अब मैं scifunc ब्लॉक को दोबारा अलाइन करती हूँ
palette browser विंडो खोलें
sources सेक्शन में constant अंडरस्कोर m ब्लॉक को xcos विंडो में खींचें और छोड़ें
इसे sinusoid generator ब्लॉक के नीचे स्थित करें
constant अंडरस्कोर m ब्लॉक को scifunc ब्लॉक के निचले इनपुट से जोड़ें
इस ब्लॉक की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है
इसे ऐसे ही रहने दें
mux ब्लॉक पर डबल क्लिक करें
input port size को 3 करें
ok पर click करें
अब मैं mux ब्लॉक को रीसाइज़ करती हूँ और मैं mux और cscope ब्लॉक को ठीक से जोडूँगी
scifunc ब्लॉक के निचले आउटपुट पोर्ट को mux ब्लॉक के निचले इनपुट पोर्ट से जोड़ें
file पर क्लिक करें और xcos फाइल को सेव करने के लिए save चुनें
उस scilab editor पर जाएँ जिसमें squareitsci फाइल खुली हुई है
एडिटर की मेन्यू बार पर उपलब्ध execute बटन पर क्लिक करें
यह squareit फंक्शन को लोड करेगा
अब हम xcos डायग्राम को निष्पादित कर सकते हैं
xcos विंडो की मेन्यू बार पर उपलब्ध start बटन पर क्लिक करें
एक ग्राफिक विंडो दिखेगी
यह विंडो तीन प्लॉट्स रखेगी
काले रंग में इनपुट sine wave
हरे रंग में आउटपुट sine wave और
लाल रंग में amplitude scaled input
ध्यान दें कि फ़ंक्शन ने इनपुट sine wave को निश्चित ही स्क्वायर किया है और १ यूनिट ऑफसेट से स्थानांतरित भी किया है जैसे कि अपेक्षित है
हमें इनपुट sine wave का बड़ा हुआ आयाम भी मिलता है जैसे कि अपेक्षित है
प्लॉट विंडो को बंद करें
अब इसे सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा:
* scilab में स्क्वैरिंग फंक्शन लिखना
* xcos में scifunc ब्लॉक उपयोग करना
* विविध प्लॉट्स बनाने के लिए mux ब्लॉक उपयोग करना
* अनेक इनपुट और आउटपुट रखने वाले फंक्शन्स को कॉल करना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
इस mission पर अधिक जानकारी spokentutorial org/nmeictintro पर उपलब्ध है
आशा करती हूँ यह ट्यूटोरियल आपके लिए उपयोगी था